एक समुंदर है जिसके नीला नीला पाणी है और समुंदर में बोट है बोट के ऊपर दो--

यहाँ एक बस खड़ी हुई है बस में बहुत सारे लोग चढ ऊतर रहे है कुछ लोग खड़े भी हुए है कुछ लोग ऊपर भी है और वहा पर एक अ लंबा सा कुछ नीला नीला दिख रहा है बाजू में पेड़ पौधे भी है।